ढेर सारे पेड़- पौधे हैं| एक गार्डन बना हुआ है| गार्डन में --

ये एक दीवार है दीवार के पास दो मंजिले के घर बने हुए है जो पीले रंग के हैं। एक ग्रीन कलर के हैं। एक गमला रखा हुवा है जिसमें एक पौधा जम रहा है। साथ में रोड है। बहोत अच्छा लग रहा --

ये एक रोड है जहाँ पर गिट्टी बालू गिरा हुआ है। साथ में कुछ लोग लड़के बाइक से आते जाते नजर आ रहे हैं।

दो अंकल है जो सामने से आ रहे हैं। बा पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है।

साथ में कुछ लोग है| आते जाते नज़र आ रहे है।

ये वाराणसी के प्रधान कार्यालय है जहाँ पर पिंक कलर की--